ये समुंद्र के जीने पे खड़ा हुआ और दूर दूर तक पानी ही पानी दिख रहा है।

एक एम_एच इंटरप्राइजेज इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रीशियन किचन है और यहां पे सारे इलेक्ट्रीशियन के आइटम मिलते हैं किचन के।

एक लैब है लैब के अंदर कुछ सिस्टम रखे हुए है।

उसके पास दो दो मशीने रखी हुई है अ एक भगवान की मूर्ति रखी हुई--

और स्टेज पे सो सोफा रखा हुआ है।

और बहुत सारे बंदे हैं बहुत सारे औरतें हैं।

व शिव जी की पेंटिंग बना रखी है एक टेबल है।

उसपे ग्लास पॉट और फ्लावर्स रखे हुए बगल में सोफे --